तेजा बुक स्टाल है जिसमें की एक दुकानदार है एक गारा ग्राहक जोकी डार लीबा के कुछ ले रहे हैं| बोहत सारे पोस्टर भी लगे हुए हैं।

बहुत सारे बहुत झक्कास का उजला कलर का घर है जिसमें की एक टी.वी. लगे हुए हैं| बहुत झक्कास का घर है जो की देखने में बहुत आलीशान है| उजला कलर का पेंट किये हुए हैं जोकि देखने से बहुत अच्छा लगता है।

बहुत बड़ा डेकोरेशन हो रहा है जिसमें बहोत सारे फूल लगे हुए हैं| बहोत सारे बल्ब भी लगे हुए हैं| बहोत सारे बहोत सारे फूल-पत्ती लगे हुए हैं जोकि सजाये हुए हैं बहोत बढ़ियां से।

सलून में दो आदमी है जो की एक आदमी फोन लगइले है जिसका बाल बना रहा है| जो जिसके शरीर पर कोई गमछा अच्छा दिया हुआ है एक आदमी जो खड़े हैं वह लाल कलर का शर्ट पहने हुए --

सिंदूर लगाए हुए हैं बहुत सारी औरत है जो की कोई पूजा कर रही है जो की लग रहा है नदी के साइड में वृक्ष भी है जो --

एक बहुत बड़ा पल तीन-चार आदमी है जो की एक बहुत बड़ा पलाय है| कोई गाड़ी पे लाद के ले जा रहा है जो की गाड़ी में दो पहिए लगे हुए हैं| काला कलर का पहिया छोटे-छोटे लगे हुए हैं घर का कलर उजला है।

बहुत सारे लड़का-लड़कियां है जो की एक लाल कलर का शर्ट पहने हुए है काला कलर का पेंट जो कि कुछ लिए हुए हैं हाथ में कुछ लिए हुए हैं जिसमें --

कुछ लिख कुछ लिखे हुए है लाल कलर का कपड़ा टंगा हुआ है जोकि स्टार का चिन्ह बनाया हुआ है| लगता है कोई चीज़ का उत्सव मनाया जा रहा है जिसमें की बहुत सारे --

सड़क पे टेम्पू लगे हुए हैं टेम्पू में एक आदमी खड़े ल लटक के खड़े हैं जो की काला कलर का शर्ट पहने हुए है काला कलर का पेंट पहने हुए है उजला कलर का गमछा लप लपटे हुए हैं।